और बहोत सारे काम हो रहा है। लकड़ी भी बिछा हुआ है और कुछ ही दूर बोहोत सारे दरख़्त भी हैं।

ये एक पहाड़ का तस्वीर है। इस तस्वीर से दिखता है कि यह पहाड़ बहोत ही गहरा है।